यहां पे मुझे कुछ आ यहां पे कुछ समान दिख रहें हैं और बल्ब भी दिख रहा है आदमी भी दिख रहा है यहां पे मुझे।

यहां पे मुझे एक ग्रिल दिख रहा है जो की लोहा का है।

और डिस्को लाइट भी है जो जल रहा है।

यहां पे मुझे एक एजेंसी दिख रही है गाड़ी सब भी खड़ी है और--

मुझे होटल दिख रहे हैं कै ठो और कुछ आदमी भी दिख रहे हैं और साइकल मोटरसाइकल भी दिख रहा है।

यहां पे मुझे दुकान दिख रहा है जिसमें ये बहोत सा काउंटर पे बहोत सारे डब्बा सब रखा हुआ है बहोत सारे टंगा हुआ सामान--

यहां सामने मुझे बहुत सारे चेयर दिख रहे हैं टेबल दिख रहे हैं पोस्टर दिख रहे हैं झूमर दिख रहा है बल्ब दिख रहा है आदमी भी--

यहां पे एक दुकान में बहुत सारे कपरे हैं जो कि टांगा हुआ है और पोस्टर भी है टांगा हुआ साइड में लगाया हुआ है।

यहां पे मुझे आदमी सब दिख रहे हैं होटल भी दिख रहा है और बहोत सारे आदमी हैं रस्ते पे चल रहे हैं साइड में बाइक सब भी लगा हुआ है।

यहां पे मुझे बहोत सारे रंग बिरंगे कुर्सी लगा हुआ दिख रहा है पंखा भी लगा हुआ दिख रहा है पर्दा भी दिख रहा है।

यहां पे मुझे बहोत सारे कपड़े दिख रहे हैं जिसमें पजामा है टी शर्ट है और--

यहां पे मुझे काउंटर दिख रहा है जाली वाला ई शायद ट्रेन है।

यहां पे मुझे एक पेर दिख रहा है मम लाल कपड़ा से बांधा हुआ और गोलंबर दिख रहा है इधर मुझे घर भी दिख रहा है हलमान जी का मूर्ति भी --

यहां पे मशीन रखा हुआ है और यहां तराजू में रखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक वाला--